इस बहोत ही मेहनत से पेन्टिंग भी किया जैसे व्हाइट ब्लू ग्रीन --

और यहाँ बोहोत ही बनाने में पैसा खर्चा हुआ है और ये बहुत मेहनत से बना है।

बोहोत ही अच्छा और बोहोत ही सुन्दर सा एक जगह दिखया गया है जो दिखने में बोहोत ही खूबसूरत बोहोत ही अच्छा है।

यहां बोहोत सारे लोग दूर-दूर से घुमने के लिये आते हैं। बोहोत सारे पेड़ भी लगे हैं और बोहोत सारे लाइट वगरे भी लगे हैं।

यह दिखने में भी सुंदर और अच्छा है। इसमे हमें पूरे नंगे देवता दिखाई दे रहे हैं। एक स्टैचू बनाई गई है।

और यह दिखने में भी बोहोत सुंदर और बोहोत ही अच्छा है। यह घर बोहोत ही मेहनत से बनाया गया है। योगा करने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है।